बहोत अच्छी अच्छी लग रही है।

चौपाटी का चित्र दिखाया गया है।

यहां आ दुकान गाड़ियों की फाइनेंस दुकान है।